दाहिने ओर के व्यक्ति ने बैंगनी रंग का शर्ट पहना है।

इसमें बहोत सारे टमाटर के पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

तर की बाई ओर एक लैपटॉप दिखाई पड़ रहा है।

व्यक्ति ने अपने मुंह पे सफेद रंग का कुछ लगा रखा है।

दिए गए चित्र में तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

दिए गए चित्र में एक पोस्ट ऑफिस है।

पोस्ट ऑफिस के बाहर एक जनरेटर रखा हुआ है जिसका रंग लाल है।

दिए गए चित्र में रेलवे पटरी दिखाई पड़ रहा है।

इत्र में एक व्यक्ति फोन से बात करते हुए दिखाई पड़ रहा है।

दिए गए चित्र में एक बाजार दिखाई पड़ रहा है।